यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है।

यहां पर छोटे छोटे घर भी बनाए हुए हैं। और दूर दूर मुझे बहोत सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी दिख रही है।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

जहां पर मुझे बहोत सारे बीयर की बोतल दिख रही है। यहाँ पर मुझे बहोत सारी बड़ी बड़ी लाइटेंस भी दिख रही है।

एक दो आदमी खड़ा है और यहां पर मुझे बहुत सारी रेत बाजरी भी दिख रही हैं।

सफ़ेद हैं कुछ और बहोत सारे आलु में दाग लगे हुएं हैं।

अरे यहां पर मुझे बहोत सारे फ्लावर्स के हारे दिख रही हैं यहां पर मुझे बहोत सारे लाइट्स दिख रही हैं और यहां पर मुझे बहोत सारे पिलर दिख रहे हैं।